ये एक घर में जो ईंटें का दिखाई दे रहा है।

आप इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा सा--

बहोत सारे बच्चे को खड़ा देख सकते है और एक--

जिसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं।

बच्चों की रखी गई दिखाई--